यहां पर तीन मचान है।

यहां पर तीन कारे दिख रही है।

इस बिल्डिंग के ऊपर कर्नाटका भाषा में कुछ लिखा हुआ है।

इसके बाहर एक पोस्टर लगाई गई है।

यह पिक्चर किसी इवेंट की है।

नदी के इस किनारे एक लड़का खड़ा है।

इसके पीछे कुछ पेड़ है एवं बिल्डिंगे है।

इस मकान के पीछे का दृश्य काफी हरा भरा है।

यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट है।

यह एक लकड़ी का पुराना कारखाना है।

यहां पर सामने की तरफ फूल की दुकान है।

यह दृश्य एक फल के ठेले का है।

यह ठेला सड़क के किनारे लगाए गए है।

कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

कान के बगल में एक सड़क है।

यह दृश्य एक पिकनिक स्पॉट का है।

कुछ दुरी पर एक छोटी सी नदी दिख रही है।

मैदान के निचले वाले हिस्से में खेती की जाती है।

यहां पर कुछ पानियों का जमावड़ा है।